सब जगह लाइट लगी हुई है।

ये एक किराने की दुकान है। यहां पे बहोत सारे सामान है बोरी है।

ए_सी लगी हुई है यहां पे सिगरेट की भी फोटो दिखाई दे रही है।

यहां पे नदी है पेड़ हैं अलग अलग।

ये एक जगह है यहाँ पे बहुत सारी बाइक हैं जहां पे शादी हो रही है।

और यहां पे लड़कों के कपड़े मिलते हैं लाइट लगी है।

ये एक स्कूल है यहां पे पेड़ है और--

पुलिस आई हुई है बहोत सारे लोग यहां पे खड़े हैं।

बहोत सुंदर पेड़ पोधै फूल हैं।

और दौड़ लगा रहे हैं कौन फर्स्ट आएगा।

ये एक बाल काटने वाली दुकान है यहां पे आय हुए है बहोत से लोग--

कौन फर्स्ट आएगा? रेस हो रही है बच्चों के बीच में।